नीचे हम देख सकते हैं की दो थैले बीचे हुए दिख रहै हैं जैसे की लाल रंग के थैले पे हम देख सकते हैं।

यह एक मॉल दिखाई दे रहा है हम देख सकते है यहाँ पे तीन लोग नज़र आ रहै है जैसे कि दो महिला और एक बच्ची --

और हम देख सकते है सफ़ेद रंग के फव्वारे भी टँगाए गए दिख रहै है।